साइड में बॉउंड्री लगी हुई है।

और रोड के उस साइड नदी है।

पेड़-पौधे दिख रहींहीं हैं लेडिसें आ रही हैं उनके पीछे जोकि साडी पहने हुई हैं।

यह किसी बिल्डिंग का पिक्चर है जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है चार से पाँच मंजिल बिल्डिंग दिख रहा है।

एक आ हेलमेट दिख रहा है।

यह दुर्गा माँ की प्रतिमा है जिसमें की दुर्गा माँ बहुत ज्यादा सुन्दर लग रही है उनके बहुत बड़े बाल हैं।

और अब हम्म बादल दिख रहे हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं बहुत सुन्दर नजारा दिख रहा है।

यहाँ पर नदी का वेउ है जिसमे की बहुत सारे व्यक्ति अ --

रोड दिख रहा है वाइट कलर की बिल्डिंग है बिजली के तार लगे हुए हैं।

यह किसी अ मार्किट का पिक्चर जिसमें की काफी सारे लोगों बाहर खड़े हुए हैं।

दिख रही है खाली मैदान दिख रहा है पेड़ की परछाई दिख रही है।

बाहार एक व्यक्ति खड़ा हुआ है स्कूटी खड़ी हुई हैं।

गाली की रास्ता दिख रही है स्काई दिख रहा है बिल्डिंग बहुत बड़ी-बड़ी दिख रही हैं।